एक साइकिल की दुकान है उसमें बच्चों के साइकिल हैं बड़ों की और अलग-अलग कलरो के साइकिल ऑरेंज ग्रीन ब्लैक --

और डार्क ग्रीन का पानी है।

और एक घड़ी लगी है और लोग बैडमिंटन से चार लोग बैडमिंटन खेल रहे है एक साँचा है जिसमे रख सके और बटन और खेलने की लिए।

दुकान है वहाँ पर सब्जियाँ रखी हैं मूली रखी है करेला गाजर और तुरी रखी है।

लड़कों के पिंक ये सब बच्चों के कपड़े ब्लू कलर के कुर्ता ये डब्बे रखे हुए है उसके फिर सांचे है बहुत अच्छे-अच्छे लाइटे लगी है वहाँ अलग-अलग टाइप के डब्बे रखे।